कुछ अशोक के पेड़ भी लगे हुए हैं जो कि इसकी खूबसूरती को और अच्छी तरीके से निखार रहे हैं।

बचाने के लिए सरकार का एक अच्छा कदम या एक अच्छा खोज जो कि ई रिक्शा के रूप में आया है। यह बैटरी से चलता है और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक से चार्ज होता है। इससे प्रदूषण एक दम कम प्रदूषण एक दम कम होता है साथ में इसमें ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदुषण तीनों से बचाता है।

ने का इंतजार कर रहे है यह नाव आजकल के जमाने में बहुत कम देखने को मिलता है यह जेनरेटर से चला हुआ स्वचालित नाव है।

उसे शिक्षिकाएँ अपने अपने बच्चों को कुछ कलर कल्चरल प्रोग्राम या फिर कलर करने की जगह कलर करने वाले स्थान को कलर करने के लिए सिखा रहे हैं जो कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे काफी ध्यान से टीचर के किए हुए कार्य को सीख रहे हैं |